सामने एक चित्र दिखाया गया हैं इस चित्र में एक नाई की दुकान हैं नाई की दुकान में एक लड़का बैठा हुआ हैं जिसने अपने बाल कटवाए हुए हैं।

एक चित्र दर्शाया गया है। उस चित्र पर पहाड़ों पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए है।

सामने एक चित्र दर्श्याया गया है चित्र के अंदर--

सामने एक चित्र दर्शाया गया है चित्र के अंदर पहाड़ी इलाका है और यहा पर हरियाली है।

तारा बना हुआ है तारे के अंदर एक मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति के सामने एक आदमी खडा हूआ --

सामने एक चित्र दिखाया गया है उस चित्र के अंदर एक गाव मे यहाँ पर पहाड़ी इलाका है।